झाड़ भी दिख रहे हैं ऊपर आसमान भी दिख रहा है एंड सिविल कोर्ट के अंदर का भी दिख रहा है।

साइड में एक कपड़ों की शॉप दिख रही है एक जेन्ट्स बैठे हुए हैं नीचे एक बकेट है टेबल भी दिख रहें हैं एक जेन्ट्स आते हुए दिख रहें हैं ऊपर फैन रखा लगा हुआ है दो लेडिस भी खड़ी हुई हैं।

लाईट भी लगे हुएं है ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

एक पोस्टर रखा है | नीचे फर्श है | एक मेैट बिछी हुई है | टाइल्स दिख रही है।